देक रहे है यह एक इमेज दिखाई दे रहा है जो की रोड का है रोड थोड़ी सी कच्ची दिखाई दे रही है सामने पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में दिख रहा हैं एक इमेज हैं इस इमेज ग्राउंड की लग रही हैं यहां पर ग्राउंड हैं ग्राउंड के पीछे बहुत सारे घर दिखाई दे रहैं हैं घर के पीछे भी बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहैं है और एक बहुत बड़ा पहाड़ भी दिखाई दे रहा हैं।

है और यहाँ पे बहुत सारी खिड़कियाँ और गेट दिखाई दे रहे है खिड़कियों का कलर नीला है और गेट का कलर भी नीला है पीछे जो बिल्डिंग के पेड़ दिखाईं दे रहा है जो कि बहुत बड़ा है।

यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ है खंभे के ऊपर एक स्टार लगा हुआ है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग का कलर पीला है एक गेट दिखाई दे रहा है जो की बीच में बना हुआ है।